ये हमारे इलाका का एक स्कूल है ये स्कूल बहुत ही बड़ा है इस स्कूल में एक ग्राउंड भी है।

ये हमारे इलाका का एक मीटिंग है इसलिए यहाँ पर ढेर सारे --

ये हमारा इलाका का एक नदी है इस नदी का पानी बहुत ही फ्रेश है और बहुत ही ठंडा है।

खेतीआली किया जाता है इ इलाका एक रूरल एरिया है इहां पर लोग खेतीआली करके दिन गुजरता है।

वॉटरफॉल्स के सामने बहुत सारे छोटे-छोटे पत्थर भी हैं यहाँ पर लोग नहाता है और --

मग मिल जाता है यहाँ पर ढेर सारे डिज़ाइन का कप्स मिलता है इलाका का लोग इस दुकान से कप खरीदता है।

ये रेस्टोरेंट बाहर से भी जितना सुंदर है अंदर से भी उतना सुंदर है रेस्टोरेंट के अंदर का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है।

पहाड़ के ढाल से पहाड़ में चढ़ता है यहाँ पर हर दिन --